झूमर भी लगा हुआ है यह टेबिल भी अच्छी सुंदर बनी हुई है।

तो घूमने के लिए इ लोग आते है झरना को देखने के लिए और यहाँ क का इतना सुंदर नज़ारा रा है और यहाँ का व्यवस्था भी अच्छी है।

ये जगदलपुर की यहाँ फल वगैरह उगाया जा रहा सब्जी भी बहुत अच्छे से होती है हर प्रकार का सब्जी है या अधिकतर फल सब्जी--

ये ब बड़ा गार्डन बना हुआ है इसमे सुनहरी छोटी-छोटी घासें लगी हुई है पेड़-पौधे लगे हुए है लोग घूमने आते है यहाँ पर--

यहाँ पर बस्तर में छोटे-छोटे पीतल के बहोत सारे खिलौने बने हुए है कोई हाथी है और ये हमारे यहाँ के चित्र बना हुआ है कोई उनकी प-- बनी हुई है।

ये पार्क है यहाँ बहोत बड़ा झाड है यहाँ पे लाटा-गुटा लगा हुआ है यहाँ लोग पिकनिक के लिए आते है यहाँ खाना बनाते है खाते है खेलते है बच्चे कूदते भी है और खूब मस्ती करते है आनंद आता है यहाँ पर रहने से --

तेश्वरी मइया का मंदिर है यहाँ से बाहर के लोग दर्शन करने के लिए आए है बस मे भर के माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और या फिर माँ के--

बनता है यहाँ लोग बाग रहने की सुविधा भी है खाने की सुविधा भी है और यहाँ आते है विश्राम करते है और खाना खाते--

ये हमारा जगतु पुल का है यहाँ प्लेन में बैठे हुए है जगदूपर से रायपुर के लिए उड़ान भरी जा रही है और ये ब ब इसमें हर तरह से खाना- पिने की सुविधा भी दी गयी हैं।

बड़ा मंदिर है और बड़ी-बड़ी सीढ़ियां हुए है यहाँ लोग आते है घूमने की खातिर आते है हमारे जगदलपुर के लोग भी आते है देखने के--